सामने तस्वीर में दिख रहा है।

इसमें दिख रहा है यहां एक रैली निकाल रही --

जैसे डाइनिंग टेबल के आगे पीछे --

कुछ चेयर लगी हुई है और बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए है।

सामने मुझे एक बहुत बड़ा महल नजर --

और किचन जैसा बना है।

है जिस घर के बाहर लिखा हुआ --

मुझे सामने एक बहोत बड़ी गुफा --

है जिस लाइब्रेरी में मुझे बहुत सारी सीटें --